यहा बहुत सारे खंबे हैं।

एक व्यक्ति ब्लू रंग की मोटरसाइकिल के पास खड़ा है।

सामने एक बैग जैसा कुछ रखा गया है।

सामने कुछ झालर लगे हुए हैं।

ऐ_सी और पंखे भी लगे हुए हैं।

यहां पर मोटरसाइकल और टेंपो हैं।

यहां अलग अलग प्रकार की बाल लगाई गई है।

आस पास बहुत सारे दुकानें भी हैं।

यहां पानी पत्थरों को चीरते हुए आगे आ रही है।

बाहर बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

इस व्यक्ति ने टोपी पहनी रखी है।

यहां सिर्फ कार और वैन ही हैं।

यह पेट्रोल पंप है जहां तेल देने की तो मशीने लगी हुई है।

जिसमें घोड़ा छापा हुआ है।

सामने तिरपाल टंगा है जिसका रंग पीला है।

यहां दो व्यक्ति बैठा हुआ है सामने और एक व्यक्ति है।

एक वाइट और एक ब्लैक बोर्ड --

सामने वाले भैया के गर्दन में ब्लूटूथ लगा हुआ है।

और पंखे भी लगे हुए है।

यहां कुछ व्यक्ति भी खड़े है।

बाघ के स्थान को चारों ओर से जाली से घेरा हुआ है।

सामने एक पेड़ लगा है घर के सामने एक स्कूटी खड़ी है।

सभी बच्चों के सामने कॉपी और कलम है।

खंबे के ऊपर चार स्पीकर रखे गए हैं।